यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे है। जे डबल ई की पढ़ाई कर रहे है। फैन लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है टी_वी लगा हुआ है।

पोस्टर लगा हुआ है ऊपर में। आसमान नीला है।

यहाँ कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं भारत माता की जय भारत माता की जय कर रहे हैं।

इधर भी डब्बा सब रखा हुआ हैं। खाने का समान --